और यहां पे एक सफेद रंग की सुजुकी की गाड़ी भी खड़ी हुई है।

एक आदमी खड़ा है जिसने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है।